इसके उप्पर टीन सेट लगा है।

यहां बच्चे गोलों में खेल रहें हैं।

यहां टूटी फूटी कुर्सियां लगी है।

यह कोई हवेली जैसा है यहां बहुत पेड़ लगे हैं।

यहां कुछ झूले लगे हुए हैं यहां बच्चों के टॉयज लगे हु --